हुए हैं और कुछ को पुरस्कृत किया जा रहा है।

इस दृश्य में मुझे मंदिर --

इस दृश्य में मुझे गाड़ी दिखाई दे रही--

इस दृश्य मे मुझे पेड़ पौधे बिल्डिंग --

पर्दे दिखाई दे रहे हैं।

और बस की छत पर लोग अंदर लोग गाड़ियां बाइक --

मंदिर ड्रेसिंग टेबल नजर आ रहे--

इसमें गाड़ी में डाल रहा है।